एक कलर से कुछ लिखा हुआ है और निचे मोबाइल नंबर लिखा है सामने एक आदमी बेठा हुआ है जो सफेद कल--

है जिसमे चावल और सब्जी है सामने एक जग रखा है उसके बगल में ग्लास है कटोरा है जिसमे चम्मच डली हुई है।

दो कटोरी रखी हुई हैं और पीछे एक लाल कुर्सी दिख रही है और दीवाल दिख रही है जो नीले कलर की है और कटोरी में एक--

सामने एक हाल है जिसमें नीचे नीली चद्दर बिछी हुई है जिसके ऊपर बहोत सारा बच्चों के खेलने का समान है जीप है मोटरसाइकिल है कुछ ठेले हैं।

और साइड में बॉर्डर बनी हुई है जो नीली लाल है और ऊपर छत पे पंखे लगे हुए है।

सामने एक पेट्रोल टैंक दीख रहा है जिसमे खब्बे बने हुए है जो सफेद कलर के है उपर छत भी सफेद--

कलर की है और इसकी ऑरेंज कलर की है और सामने ऑरेंज कलर और सफ़ेद कलर का बड़ा--

फिर पीली नीली और सफेद गोल्डन कलर की है नीचे तीर का निशान बना है जो पीले कलर का जिसमें लाल निशान बना है नीचे।

वो है जो कला चडा और कलि टी शर्ट पहने हुए और गमछा सफ़ेद कलर की है इसमें काले पंखे --

लगे हुए हैं सामने की दीवाल ऑरेंज कलर की है और सामने एक गेट बना हुआ है और साइड बहुत सारे कांच लगे--

एक आदमी दिख रहा है जो बैठा हुआ है जो काली कुर्सी पर बैठा हुआ है और सफेद शर्ट पहने हुए सामने फोटो खींच रहा है हाथ में मोबाइल है।

इसके पीछे एक आदमी खड़ा है जो मा नीला मास्क लगाए हुए हैं और हाथ में हेयर ड्रायर है पीछे कांच लगा हुआ है और दीवाल पर--

उपर ऐ_सी लगी हुई है साइड में खिड़किया बनी हुई है।

मशीन के पीछे बोहोत सारे पेडे दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आसमान दिख रहा--

और बाहर भी तो तीन आदमी और कुछ महिलाए खड़ी हुई है।

अ डंडिया बनी हुई है जो एक ब्लैक एंड वाइट थोड़ी हरी और एक लाल और एक ब्लैक एंड वाइट दिख रही है जिसके उपर --

उस पर अ स्टूल स्टूल बने हुए हैं तख्त और दोनों साइड दो बड़े हरे--

रंगीन चित्र बने हुए है और इसके सामने खम्बो की रेलिंग बनी हुई है जो हरे कलर की है जिनके उपर--

पीले कलर के लोहे की चेन लगी हुई है और सामने एक व्रिस दिख रहा है और रोड के उस साइड बोहोत सारे पेड़ दिख रहे है।

दीवाल लाल कलर की और पट्टी सफ़ेद कलर की है जिसके ऊपर सफ़ेद ऑरेंज गुब्बारे लगे हैं और ऊपर कांच लगा हुआ है जिसके ऊपर दो --

तो बन केस और सेकेन्ड केस लिखा हुआ है ऊपर छत में भी बहुत सारे--

पीले ऑरेंज और सफ़ेद गुब्बारे चिपके हुए है और दीवाल में पंखा लगा हुआ है सामने गेंदे के--

सफेद कलर के फूलो की लाल सफेद और जालर बनी हुई है उपर छत पे एक दिख रही है और पीछे सफेद--

सामने एक ट्रैक्टर दिख रहा है जिसमें एक डिजाइन के कांच लगे हुए हैं जो लाल कलर का है पीछे ट्रॉली है जिसमे जाला लगा हुआ है जिसके ऊपर --

और धुँआ धुँआ सा दिख रहा है और पीछे एक ट्राली दिख रही है जिसमे भी भूसा डाला हुआ है।

सामने एक अन गेट के अन्दर एक पेट दिख रहा है जो सफेद कलर का है इसके उपर नीली चद्दर--

और बाहर बहोत से गमले रखें हुए हैं जिनमें हरे पेड़ लगे हुए है एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई--

बनी हुई है और बहुत सारे ऐसी के लगे हुए हैं के पंखे लगे हुए हैं बाहर नीचे बहुत सारे पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं और पेड़ों के द--

और इसके पीछे एक हरे और पीले कलर की बस दिख रही है एक सामने आदमी खड़ा है जो हरे कलर के --

सामने एक आदमी दिख रहा है जो नीली शर्ट पहने हुई है इसके दोनों साइड दो कुर्सी रखी है जो काले कलर की है सामने एक रेक बनी है।

बनी है ऊपर छत सफेद कलर की है जिसमें वो पंखा लगा हुआ है और सामने की दिवाल हरे--

सामने एक लम्बी चोकोट टेबल है जो ग्रीन उपर नीले कलर की है और --

ओ सफेद कलर की है और निचे जमीन पे अ क्रीम से कलर के टास लगे हुए है और--

और टेबल पर एक मूर्ति रखी हुई है कैलंडर रखा हुआ है और पीछे दीवाल में खीडकीयाँ लगी हुई है जो लकड़ी की--

अ पीछे दीवाल का कलर सफ़ेद है साइड एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है।

पर्दा लगा हुआ है जो इसमें रंगीन कलर दिख रहा है और दोनों साइड बोहोत सारे माइक बक्से--

रखे हुए हैं जो काले कलर के हैं और नीचे भी चित्र दिख रहा है सामने ऊपर पर्दा लगा हुआ है जो ऑरेंज --

सामने एक टेबल है जिसपे सफ़ेद कपडा बिछा है बोहोत साफ--